ऐसा उज्जर-उज्जर कपड़ा पहनले अथिन पीछे के दीवालो उजरा रंग के है एगो घड़ी लगल हैं सजावट केल गेले या।

और बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है सड़क भी दिखाई दे रही है बहुत सारे लोग भी है जो दिखाई दे रहे है।

पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है बहोत सारी और बोहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

बच्चे बैठे है।

नीचे मिट्टी है ऊपर कर्कट है।

यहाँ एक टेबल रखा है बहोत ही अच्छा ग्लास वाला टेबल है उसके ऊपर एक प्लेट रखा है प्लेट के ऊपर कुछ खाने की चीजे रखी हैं ।

यहा पे भी बहोत -- ट्व लेन सड़क दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर बस लाइन वाला ट्रक हैं जो की लाइन लगा के खड़ी है बहोत सारी।

यहा पे ये एक ये बहोत ही बड़ा नदी है जिस में आगे चार पाच नाव दिखाई दे रही है।

तो कोई सैलून का सीन लग रहा है जिसमे एक ठो नाइ है जो एक आदमी का दाड़ी बना रहा है एक पीछे भी एक आदमी है।